यहां पर बहुत सारी लाइटें भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर बहोत सारे शराब के पैकेट भी रखे हुए दिखाई दे रहे--